गोपिका है राधा ये टेबल पे रखे--

बहुत ही शांति है गहरईयां है बहुत ही सुनसान सा ये जंगल है पेड़ ही पेड़ है पहाड़ ही पहाड़ हैजंगल है पूरा।

ये यह एक मकानिक है। जो गाड़ी सही कर रहा है सब गाड़ी के अंदल बंदल खोल के उसे देख रहा है प्रॉपर तरीकेसे और इसने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

और बहुत ही बड़ा यह ग्राउंड है और सूरज अस्त होता दिखाई दे रहा है। खुला आसमान है।

बहोत ही मोटे-मोटे से पनीर के पराँठे है ये और हम देख सकते है अह बड़ी सुंदर तरीकेसे उन्हे सजाया गया है तीन चार पराँठे है ये प्लेट मे गरम-गरम सुंदर तरीके से फुला -फुला सु सेंखा गया है।

यहा बड़ी ही हरी भरी सब्जीया रखी रही रखी हुई है जैसे की नींबू धनिया टमाटर बैगन कच्चे केले कट्टों मे भरी हुई है सारी चिजे पोलीथीन मे बंधी हुई है भेर भरा--